ये एक बुक स्टोर दिख रहा है ये स्टेशनरी दिख रही है यहाँ कुछ पेंसिल बो --

ये एक शिक्षा मंडल दिख रहा है यहाँ एक टीचर्स खड़ी हुई है ये बच्चे बैठे हुए है।

यहाँ गमले दिख रहे हैं यहाँ कुछ पौधे दिख रहे हैं यहाँ कई बच्चे दिख रहे हैं यहाँ शेड्स दिख रहे हैं यहाँ ड्रॉइंग दिख रही --

विद्यालय दिख रहा है यहाँ कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ कुछ बच्चे दिख रहे हैं।